--चर में हम देख सकते हैं की हमे एक प्लेटफार्म नजर आ रहा है और बीच में एक रेलवे ट्रैक है उसके बाद एक और प्लेटफार्म हैं हम ऊपर की तरफ एक शेड को देख पा रहे हैं।

--और जिनकी हमें डलिया नजर आ रही है पतली-पतली और पत्तिया देखने को मिल रही है हम देख पा रहे है सामने की तरफ हमें खुला आसमान दिख रहा है जिसमें बादल है।

नीचे हम एक आदमी को देख पा रहे है जिसने यल्लो टी शर्ट पहनी हुई है और पीछे की तरफ हम एक बैकग्राउंड में देख रहा है रोशनी सी आती हुई वहां पे विंडोज़ भी है।

पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें कपड़े वगैरा देखने को मिल रहे हैं काफी सारा कपड़े रखे हुए हैंयहाँ पर और पैकेट के अंदर पैक करके ।

यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारा पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है एक नदी वगैरह है वहाँ पर काफी पत्ते और गंदगी से देखने को मिल रही है गंदा पानी है थोड़ा--

हम देख पा रहे है नीचे की तरफ कुछ पर्वत हमे देखने को मिल रहे है और वहां पर हमे एक टावर देखने को मिल रहा है और वहां पर बहुत सारे प्लांट वगैराह हो गए हुए है नीचे हमे जमीन दिख रही है जिसमे बहुत सारे मिट्टी वगैरा पड़ी हुई है।